बहुत सारे फल फ्रूट है जो की एक ब्रांच टाइप में रखे हुए --

एक मंदिर टाइप का बना हुआ है वहा पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

एक मकान बन रहा है जहां पर कारीगर कारीगिरी कर रहे है कुछ लोग सामान दे रहे है वहाँ पर एक पाइपलाइन बनी हुई है।

एंड एक फर्श टाइप का है जहां पर वाइट कलर का बैकग्राउंड भी दिख रहा है और कुछ ब्लैक कुर्सी तो कुछ व्हाइट कुर्सी भी है।

एक लड़का दिख रहा है जो चाय दे रहा है वहां पर एक फ्रिज भी दिख रही है एक फेन दिख रहा है।

और पीछे पोस्ट में लगा हुआ दिख रहा है जो नील कलर का पर्दा भी है।